तस्वीर में एक लकड़ी का बना हुआ घर--

आगे कुछ घर भी बने हैं।

साइड में सीढ़ियां ऊपर की तरफ बनी हुई हैं।

टेबल लगे हैं और उसके चारों तरफ --

और कुछ मोबाइल्स के डिब्बों की तरह लग रहा है नीचे भी कुछ--

तस्वीर में एक लड़का चेयर पर बैठा हुआ है।

जिस पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

रात का टाइम है इसलिए पीछे अंधेरा है।

आगे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में म्यूजिक बॉक्सेस --

ये टोटल है तीन छे नौ और बारा।

जिम के अंदर कई सारी मशीनस रखी हुई हैं।

बैठ रखे हुए हैं लकड़ी के--

जिसके पास नीचे दो नीले रंग के ड्रम रखे हैं।

जिस पर कई सारे लोग जो है वो--

यह बच्चे नीचे बैठे हुए हैं एक लाल रंग की चेयर रखी है।